यहां पे सैलून बना हुआ है और यहां पे आदमियों के लिए सैलून बना--

रूम पे अलग अलग टीचर्स खड़े हैं और और बाहर में पुलिस खड़े हैं दो लोग।

जूता चप्पल रखा हुआ है अलग अलग बड़ा बड़ा डिब्बा में पेंट रखा हुआ है साइड में बहोत सारी समान रखी हुई है।

चॉकलेट लगी हुई है कीटकैट चॉकलेट लगा हुआ डेयरी मिल्क चॉकलेट लिखा है फाइव स्टार चॉकलेट लगा है दो-तीन कैंची रक्खी हुई है कार्ड रक्खा हुआ --

बाईके खड़ी है साइकिले खड़ी है अंदर में बहोत सारा सामान है ज्वेलरी का शॉप ओपेन है।

मोटे के तावे पतली की तरह गाय रखी है नॉर्मल बहोत सारे रखे हैं और हरे भरे पेड़ पौधे लगे हैं पाइप एक लगी --